है जिस पे कुछ लोग और लेडीज चल रहे हैं।

और ये कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

जिसमें कुछ कुर्सियां और टेबल रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक अंबुजा सीमेंट की दुकान दिखाई दे रही है।

और बराबर में एक घर भी दिखाई दे रहा है।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

और ऊपर एक पंखा और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।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

लोहे के सरियों के ओर कुछ सीढ़ी भी पड़ी हैं।

और ऊपर कुछ केवल केबिल भी खींचे हुए हैं।

और एक बोर्ड भी लगा रह लग रहा है।

इस फोटो में एक छत दिखाई गई है जिस पर एक ए_सी का पंखा रखा हुआ है और कुछ आदमी भी खड़े हैं और एक--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

जिसमें कुछ जिम का सामान पड़ा हुआ है।

इस फोटो में कुछ आदमी और लेडिज खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक कुछ तीन का झोपड़ी बनी हुई है।

कटोरी में कुछ खाने का सामान भी है।